ये बहुत पुराना खिलाड़ी जिम हैं।

ये तो एक करोड़ इनाम देने लायक मंदिर है बनाने वाला कितना अच्छा बनाया होगा। जो सामने--